पास में कैरेट दिखारे कैरेट में पीले पीली सब्जीया रखी हुई दिखाई दे रही है सटल खुले हुए दिख रहै है जो नीले रंग के दिखाई दे रहे हैं।

साइड में उसमें डिज़ाइन करि हुई दिखाई दे रही है जो काले रंग की पास में एक दीवाल जाती हुई जिसमें गेट लगा हुआ दिख रहा है पास में एक लाल कलर --

इसके अंदर एक डब्बा है डब्बे के में एक चित्र बना हुआ दिखाई दे रहा है इसमें लेडिज बनी हुई है इसमें कुछ चमकता हुआ दिखाई दे रहा है इसमें कुछ लिखा हुआ नीचे हरे रंग से लिखा हुआ दिख रहा है।

कुछ सफ़ेद रंग के दिखाई दे रहे हैं आसपास कुछ लोग घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं उसके ऊपर कुछ सफ़ेद कलर के फुवारे दिख रहे हैं साईड में पत्थरों का बना हुआ भी दिखाई दे रहा है आसपास पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं ये गार्डन लग रहा है।